यह एक मोर का चित्र है जो लकड़ी पे खड़ा है ।

यह एक होटल का चित्र है जहां दिवाल का कलर येलो है खिड़की के ऊपर रेड कलर का पट्टी किया गया हैं।

कुछ कुछ बोरे का कलर ब्लू है कुछ कुछ बोरे का कलर येलो है।

में फेवीक्विक लिखा हुआ है फेवीक्विक का कलर पीला और ब्लू है।

जिसमें एक आदमी अपने फुल ब्लैक पहन के निकल रहा है बहुत सारे चप्पल रखे हुए हैं।

यह एक घर का चित्र है। जहां पीला कलर किया गया है दीवाल पे और पीच पीच में वाइट कलर किया गया है ।

यह एक शॉप का दुकान है जहा रेड कलर से फ्रेमिंग किया हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाइट कलर से रूपा --

एल्विन डेकोर लिखा हुआ है एक बोर्ड है जिसमें से तार निकल रहा है एक आदमी खड़ा है जिसने शेरवानी पहना है गोल्डन कलर का।

यहां सामने एक ब्राउन कलर का चेयर रखा हुआ है। पीछे भी एक ब्राउन कलर का चेयर रखा उसके सामने ब्लू कलर का चेयर रखा हुआ है ।

यहाँ एक दुकान है जहां डिनर मोमो लिखा हुआ है रेड कलर से अप पीछे दो रेड कलर के सॉस के बोतल है।

न कलर का जग है रेड कलर का लाइटर है।

नीचे कार्टून रखा हुआ है व्हाइट कलर का उसमें रेड कलर का पट्टी मारा हुआ है।

सामने एक बॉल रखा हुआ है जिम करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है।

और आदमी खड़ा है जो हाथ में झोला लेके खड़ा है।

झरने के साइड साइड में हरा कलर का पौधा लगा हुआ है और लड़का हाथ फैलाकर खड़ा है।

एक आदमी खड़ा है जिस ने पीला कलर का जैकेट पहना हुआ है।